टेनिस खेलने का मैदान है कुछ जेंट्स के हाथ में टेनिस है खड़े हैं लाइट हैं खिड़कियां है।

एक पार्क बना हुआ हैं कुछ गोले से मे बने हुए दो हाथों पे एक--

बहोत बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ों पे पेड़ है घास है।

सामने कुछ घर सा बना हुआ है जिसमें चार गेट हैं येलो कलर का घर है।

दो खिड़कियां हैं टीन पड़ी हुई है पेड़ हैं सामने एक एक बड़ा सा गेट है लोहे के पाइप है।

घास है कुछ ब्लू और ऑरेंज कलर के प्लास्टिक के पड़े हुए हैं। टीन है। पॉलिथीन --

कुर्सी है स्टूल है और सामने कुछ फाइल्स रखी हुई हैं।

बर्तन स्टैंड है और कुछ अ डब्बे हैं।

और ये बोट पे एक जेंटस पीछे खड़ा है दो आगे खड़े हैं मुंह करे हुए।

बड़े बड़े ट्री हैं और पानी गिरता हुआ दिख रहा है और छोटे छोटे आ पत्थर है।

इसमें कुछ बॉक्स बने हुए रखे हुए है और ऊपर लाइट्स लगी हुई है वाइट कलर का डब्बा--

और एक जेंट्स का हाथ दिख रहा है।